के चारों ओर कुर्सी दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है।

यह एक संगीत इलेक्ट्रॉनिक का दृश्य है।

यहां पर व्हाइट एवं ग्रीन कलर का टोटो दिखाई दे रहा है।

यह एक गार्डन का दृश्य है तथा ईंटें के मदत से इसके साइड साइड बाउंड्री किए गए है।

यह एक हॉस्पिटल रूम का दृश्य है तथा यहां पर दो कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मस्जिद का दृश्य है तथा अल्युमिनियम शीशे के मदद से खिड़की बने हुए हैं।

हाफिज लोग को बैठने के लिए ज्नीमाज भी दिखाई दे रहा है।

इसके सीलिंग में बहुत सुंदर सा लाइट डेकोरेशन किए गए हैं ।

यहां पर बहुत सारे लड़के लोग खड़े हैं जो रेड कलर के कुर्ते एवं शर्ट टी शर्ट पहने हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है तथा इसके दीवाल का कलर येलो एवं ऑरेंज कलर का है।

के रोड पर एक कार खड़ी है जो रेड कलर की है।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

यह एक दशहरा पूजा का दृश्य है तथा इसके गाड़ी में मूर्ति रखे हुए हैं जिसमें बहुत सुंदर सा फूल से डेकोरेसन किया गया है।

यहां पर बहुत सारे महिलाएं एवं जेंट्स आए हुए हैं और बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

इसकी जमीन कच्ची मिट्टी से बना हुआ है।

एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है जो तीन मंजिल का है एवं जिसका कलर व्हाइट वाल पुट्टी से किया गया है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है तथा यहां पर एक ट्रक खड़े हैं जिसमें हिंदुस्तान पैट्रोलियम लिखा हुआ है।